यहां और दो इंसान खड़ा हुआ है और नीचे नीचे में फ्लोर का साइड में लेफ्ट साइड में होटल वहां बोर्ड भी लगा हुआ है।

इसको बाद में फ्लावर फ्लावर से सजाया हुआ है और फ्लावर जो पिंक है।

ये और उसका पांच ठो है।

और उसका रुफ़ट का कलर जो हैं रेड कलर का है और उसका टॉप में एक क्रॉस है।

और रेड कलर का कुछ सर्कल करके हैं।

और होटल का बाहर में एक बोर्ड लगाया हुआ है अवेलेबल आइट टी एंड कॉफी बल्कि लिखा है बोर्ड में।

उसका बगल वाला जो है शूज लोग का शॉप है बाहर में ब्ल्यू कलर बैग्स लोग टंगा हुआ है।

यहाँ मे जो बड़ा पत्थर के ऊपर में कोई कोई इंसान लोग बैठ भी रहा है।

और राइट साइड का कैफे में और साइड में डोरमेट जो रेड कलर का है।

और फॉरेस्ट का बीच में यह लोग जो कैंप फायर कर रहे हैं और पूरा माउंटेंस और ट्रेस फॉलेज लोग से कवर किया गया है।

हिल्स एरिया है दिखाई दे रहे हैं पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं उसका पेड़ पौधा लोग दिखाई दे रहे हैं।

मसला पैकेट लोग भी कार्टून लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो कि सेल में रखा हुआ है सेल जो रेड कलर में है।

और एक ठो छोता सा एक बोर्ड है जो वहां मे होंडा लिखा है वहां में हेलमेट लोग का फोटो भी दिखाई दे रहे है।

तस्वीर जो आ बस स्टेशन दिखाई दे--

ग्रीन कलर का बोर्ड में जो व्यम वीआईएम शाला ओपन जिम करके भी लिखा है ना।

ये तस्वीर में जो है स्टेज में जो पांच लड़की जो डांस कर रहे कथकली डांस कर रहे--

और बाद में बाहर में जो बनाना का ब्रांच में जो मतलब दिया लोग भी जला के रखा हुआ है।

स्कबार्ड में एक छोता छोता घर भी है तीन लोग भी दिखाई दे रहे --

ये तस्वीर में जो टायर्स का एक स्टोर दिखाई दे रहा है जो पोस्टर में भी रॉयल्स टायर करके लिखा हुआ है।

तो उसका ऊपर में जो ऊं कलम रखने वाला भी है तो वहां में एक ठो कलम भी रखा हुआ --

और नदी के किनारे में जो एक बोट स्टैंड किया हुआ है।

ये जो एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ना अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन और इनवेस इन्वेस्टमेंट पार्क है ना ये जो।

और ऊपर फ्लोर मे राड सब भी लगा हुआ है किनारे किनारे में--